खिसार पट्टिया दिखाई दे रही है बच्चे एन्जॉय कर रहे है।

यहाँ पर एक किराना दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर चॉकलेट रखी हुई है कुरकुरे रखे हुए हैं।

यहां किसी गोवेर्मेंट अफ़सर का कार्यालय नजर आ रहा है जहां पर बाइक्स खड़ी हुई है।